इस तस्वीर में मुझे एक जंगल इलाका दिख रहा है एक मैदानी क्षेत्र दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा कॉलेज दिख रहा है और ये कॉलेज का बहुत बड़ा बाहर का हॉल है।

इस तस्वीर मे मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा हैं जिसमे लिखा हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हड्डी रोग अस्पताल हैं एण्ड ड्रामा सेंटर यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ--

हाँ हॉस्पिटल का आज बोर्ड के बिल्कुल आगे एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।